दिए गए तस्वीर मे एक ऊंची विशाल भवन हैं। और उस भवन के ऊपर में लिखा हुआ है आकाशीय असथन कूलर महाविद्यालय जमशेदपुर।

ओर उसमें नीचे बहुत सारी मोटरसाइकीले रखी हुई हैं और बहुत सारे आदमी खड़े होके है जिसके कंधे पर बेग लटके हुए हैं।

दिए गई तस्वीर में एक भवन है और वो भवन एक बैंक हैजिस बैंक का नाम एस_बी_आई हैऔर सामने एक मोटर गाड़ी रखे हुए हैं और मोटर साइकिलें हैं।

दिए गए तस्वीर की दृष्टि से ये एक एक खाने- पीने की दुकान है जिसमे लिखा हुआ है बस्तर डेरी फार्म । इसमें बहुत सारी--

ये तस्वीर की दृष्टि में एक कार है और कार में सफ़ेद कलर की और वो टूटे-फूटे कार हैं जिसकी मरम्मत एक मिस्त्री कर रहें हैं और मि --